यह एक रेस्टोरेंट का सीन दिख रहा है।

नीचे कुछ सूखे पत्ते गिरे हुए भी दिख रहे हैं।

यह गांव का दृश्य दिख रहा है जिसमें खेत में पानी जमा हुआ दिख रहा है।

यहां पर कुछ लोग आपस में बात करते हुए दिख रहे हैं।

ऊपर पकड़ने के लिए सपोर्टर लगा हुआ है।

और वेटर आर्डर देते हुए भी दिख रहा है।

बगल में बैट और गुलाब दिख रहे हैं।

इसमें एक दिल के आकार का गुब्बारा भी है।

इस चित्र में फॉर्च्यूनर शोरूम दिख रहा है।